यहाँ ये झंडे वगैरा दिख रहे है ठीक है और सब एक्सरसाइज करने में बिजी --

एक चर्च है जहां एक मैम कुछ बोल रही हैं माइक पे चर्च एक यहां पे एक रेड कलर की चेयर दिख रही हैं टिसू दिख रहे हैं ।

सारे लोग दिख रहा है जहां पे कई सारे रिक्शा और एक अंकल खड़े हुए हैं कही बाहर और --

यहाँ बहोत सारी मशीने मुझे दिखाई दे रही हैं जिनसे ये लोग काम कर रहे हैं।

कुछ गरबा हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग है जो डाँस कर रहे है ब्लू लायटिंग है और बहुत सारे गरबा खेल रहे यहाँ पे--

एक मंदिर है। बोहोत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे दो लोग मंदिर जा रहे हैं एक ने येलो ड्रेस पहनी है और एक ने शायद ग्रे पहना है।

आसमान हल्का सा ब्लू लग रहा है और काफी अच्छा नजारा हैयहां का अच्छा लग रहा है।